इस दृश्य में एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है बगीचे में बीच में रास्ता है किनारे किनारे --

इस दृश्य में एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है मकान के बाहार बहुत सारे लोग खड़े हुए है ।

दो आदमी गाडी के पास बैठे हुए है वह गाडी को साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे है।

उनके पास एक सफ़ेद एक लाल रंग की बाल्टी है हाथ में एक कपड़ा है बाल्टी में पानी भरा हुआ है।

खुली जगह दिखाई दे रही है एक सड़क दिखाई दे रहा है मिटटी भी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के बाहर छोटे छोटे --